डेस्क है काफी सारे डेस्क है रेड कलर के डेस्क है ये और--

और सारे आदमी लोग हैं। सामने जो हैं सफेद कलर का कुर्ता या पजामा पहना हुआ आदमी है।

कुर्ता पजामा डाल रखा है सभी ने और टोपी लगा रखी है ऊपर सर पर और काफी सारे पेड़ हैं काफी बड़े बड़े पेड़ हैं अच्छा लग रहा है दृश्य।

येलो कलर की बस है बिल्डिंग है ये स्कूल का एरिया लग रहा है स्कूल है।

और अनार के पीछे वाले अनार बगल में रखे हैं सेब--

यहां पर फिश है अलग अलग तरह के भी फिश हैं झिग्गे भी रखे हुए हैं बड़े में छोटे में झिखेंगे रखे हुए हैं छोटी मछली बड़ी मछली रखी हुई है।

और ये एक ग्राउंड है प्ले ग्राउंड जैसा ही लग रहा है प्ले ग्राउंड ही है हरी घास है।

उन विकेट पे मारने के लिए ओ हेलमेट पहेन रखे है दो में--

सामने एक गेट जैसा बना रखा है जिसके ऊपर लिखा हुआ हैं प्रणाम।

वो लिखा हुआ है इसपे ऊपर एफ_ओ_आर_डी फोर्ड थ्री सिक्स डबल जीरो --

ये एक रूम लग रहा है और बेड है बेडशीट है।

चिल्ड्रन बुक्स चिल्ड्रन बुक्स करके लिखा हुआ है सामने एक पेड़ भी जा रहा है काफी बड़ा सा निकल रहा है।